राइट साइड में एक दुकान है जिसके पास आदमी खड़ा हुआ है।

इस चित्र में एक ट्रैक्टर देखने को मिल रहा है जिसका रंग नीला है।

टेक्टर के पीछे जमीन को कंपाउंड किया हुआ दिख रहा है।

हरे रंग की पत्तियां दिख रही है गुलाबी रंग के फूल दिख रहे हैं।

उसके बोर्ड का कलर ब्लू है और गुजराती में लिखा गया है ये।

बैंक के सामने एक पैर पोछना रखा गया है और दो चप्पल देखने को मिल रहे हैं।

डीजल के कई सारे कैंस देखने को मिल रहे और बुक्स भी रखी हुई है।

कार के उस बगल में नारियल के पेड़ देखने को मिल रहे हैं।

होटल का कलर और टेबल का कलर ग्रे ही है।

काफी लोग खड़े हुए हैं और दो लोग बैठे हुए हैं।

सड़क के उस पार हमें एक बंगला देखने को मिल रहा है जिसका कलर येलो है।

इस चित्र में सेटर देखने को मिल रहा है और एक लाइट दिख रही है बाहर की साइड में।

जिसमें से यह पीला रंग गुलाबी रंग और सफेद रंग दिखाई दे रहा है यह गुलाब का फूल है।

कम्पाउन्ड के बे बाहर विशाल वृक्ष दिखाई दे रहा है उपर सफेद रंग का छत है।

बालाजी रेस्टोरेंट के साइड में एक खाने की दुकान है और लेफ्ट साइड में एक साइकिल की दुकान है।

रेस्टोरेंट के सामने स्टूल्स दिख रहे और लेफ्ट साइड टायर --

इस चित्र में दो घर देखने को मिल रहे हैं जिसका रंग सफेद है।

एक घर के सामने दो बेंच रखी हुई है जिसका रंग लाल है और एक घर के ऊपर छतरी लगी हुई है।

दोनों घर के सामने बहोत सारे पेड़ देखने को मिल रहा है।

यह चित्र एक तुलसी बेकरी का है जिसमें खाकरा पानी पूरी चॉकलेट्स और नामिक देखने को मिल रही है।

बोर्ड में बेकरी का एड्रेस दिया गया है।

इस चित्र में एक कॉलेज दिखाई दे रहा है और उसका रंग सफेद और केसरी है।

आधा सोफा का चित्र देखने को मिल रहा है और लाइट्स की परछाइयां देखने को मिल रही है।

दवा खाना के लेफ्ट साइड में काफी सारी गाड़ियां देखने को मिल रही है जैसे स्कूटी बस ।

एक स्टूल देखने को मिल रहा है जिसका रंग काला है और एक झाड़ू देखने को मिल रही है।

इस चित्र में कई सारी कुर्सियां देखने को मिल रही है और उसके ऊपर बैग्स रखी हुई है।

दीवाल का कलर व्हाइट है बीच में बॉर्डर पीला कलर का है।

चार जीप देखने को मिल रही है और उसमें काफी आदमी उतरे हुए हैं नीचे और नजारे को देख रहे हैं।

दो बोर्ड देखने को मिल रहे हैं जो मैप वाली है।

दो आदमी देखने को मिल रहे हैं जो एक आदमी खड़ा है और एक आदमी बैठा हुआ है।

पीछे साइड काफी घर बिल्डिंग्स देखने को मिल रही है।

पार्क के बाजू में पेड़ पौधे लगे हुए हैं जो हरे भरे दिख रहे हैं।

यह एक दुकान है जिसका नाम वेराचट्टी है।

इस दुकान में कई वस्तुएं देखने को मिल रही है जैसे कि चूल्हा घड़ी और मिक्सर और कटोरा कैसेट ।

और मूर्ति के सामने दो स्ट्रेचर दिखाया गया है।

कॉटेज के सामने दो नारियल का पेड़ देखनो को मिल रहा है।

इस चित्र में एक कार खड़ी हुई है जिसमें दो व्यक्ति धोते हुए नजर आ रहें हैं।

आदमी के पीछे एक कैलेंडर और एक स्टूल देखने को मिल रहा है।

एक आदमी के बाल पक चुके है और एक आदमी के बाल नहीं पके हैं ब्लैक हैं।

तीन ए_सी लगी हुई है और फर्श ब्राउन कलर का है।

यह चित्र में एक शोरूम दिखाया गया है इस शोरूम में एक बोर्ड दिखाई दे रहा है।

तीन दरवाजा है उसके ऊपर गेट है लगा हुआ है और उसको ऊपर तीन भगवान की फोटो लगी हुई है।

मंदिर के ऊपर झंडा लहरा रहा है जिसका रंग लाल है।

समुंद्र के आसपास में छोटे छोटे गिट्टी पत्तर देखने को मिल रहा है।

समुद्र के थोड़ी दूर पर एक बिजली का खंबा देखने को मिल रहा है।

मंडप के सामने बहोत सारी कुर्सियां देखने को मिल रही है।

इस चित्र में बहोत सारे मगरमच्छ देखने को मिल रहे हैं जो पानी में है।

उपर में ब्लू और वाइट कलर का बादल देखने को मिल रहा है।

पानी का कलर थोड़ा येलो टाइप में देखने को मिल रहा है।

इस इमेज में हमें ब्लैंक व्हाइट कलर का पेपर देखने को मिल रहा है।